एक तालाब बना हुआ है उसके किनारे हवन कुंड टाइप का बना हुआ है।

एक शॉप है उसमे चिकन एण्ड फिश की बहुत बड़ी शॉप है और एक आदमी बैठा रहा है रही है।

बाहर लड़का खड़ा हुआ हैं सब लोग एक्सर्साइज़ कर रहे हैं --